यहाँ पर काफी टी-शर्ट बिकते हैं यहाँ पर टी-शर्ट को टांग कर रख दिया है यह दूकान से आदमी टी-शर्ट खरीद के ले --

यहां पर एक कार को मिस्त्री ठीक कर रहे है यहां पर उनका एक स्टाफ भी है ये गाड़ी सफेद कलर की है।